यहाँ हम एक और डॉक्टर के बारे में पढ़ पा रहे हैं। वहीं सामने पोस्टर पर और भी डॉक्टर के बारे में जानकारी दी गयी है।

वहीं हम यहाँ पर दोनों तरफ में डॉक्टर्स के क्लिनिक्स देख पा रहे है देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है| यहाँ पर हमें एक मेडिकल शॉप भी दिखाई दे रहा है।

कुछ गाड़ियां यहाँ पर हमे लाइन से लगी हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम यहाँ कुछ घर देख पा रहे हैं। देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है। यह दृश्य देख कर ऐसा लग रहा है मानो जैसे यहाँ बहुत ठंडा है।

इस तस्वीर में हम चाय पत्ती के बागान देख पा रहै है। जो की देखने में काफी सुन्दर लग रहै है।

इस दृश्य में हमें एक झरना दिखाई दे रहा है। जिससे पानी बहता हुआ काफी सुन्दर लग रहा है। यहाँ हम बड़े बड़े पत्थर भी देख पा रहे है।

यहाँ पर हम कुछ और पोस्टर्स भी लगी हुई देख पा रहे है| पेंट भी इस इमारत की बोहत अच्छी तरह से की गई है| बनियाइन का डिज़ाइन भी इसका काफी अच्छा लग रहा है।

वहीं हम यहाँ पर बहुत सारी दुकाने भी देख पा रहे हैं। हर दुकान की हमें अलग-अलग पोस्टर्स लगे हुए यहाँ पर दिखाई रहे हैं। देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

ये दृश्य एक होटल का है जहाँ हम बहुत सुन्दर तरीके से लाइटिंग लगी हुई देख पा रहे हैं।

दृश्य में हमें एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिस पे हमें होटल का नाम और उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

हमें एक हवाई जहाज देखने को मिल रहा है जो कि देखने में काफी बड़ा और काफी सुंदर लग रहा है।

इस पर बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन किया गया है| आस-पास हमें पेड़-पौधे भी देखने को मिल रहे हैं| देखने में ये दृश्य अच्छा है।

ये एक गुंबा का लग रहा है जहां हमें गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है वही हम यहां पर अन्य चीजे भी देख पा रहे है देखने में यह स्थान काफी अच्छा लग रहा है।

बहुत ही सुंदर तरीके इसे बनाया गया है इसपर काम बहुत ही बारीकी सी किया गया है आस-पास हमें पेड़ भी दिखाई दे रहे है देखने में ये दृश्य अच्छा है।

देखने में काफी बड़ा और काफी सुन्दर लग रहा है| यहाँ हमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं| आस-पास हम कुछ पेड़-पौधे भी देख पा रहे हैं।